यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ एक पार्क हैं पार्क में बहुत सारे लोग हैं यहा बच्चे झूला झूल रहे हैं बीच मे एक छोटा सा पड़े भी है।